और यहाँ एक लाइब्रेरी भी है यहाँ पर लाइब्रेरी मे काफी ज्यादा मात्राएं में किताब कॉपी रखी गई है।

यहाँ पर फिलहाल कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा है।